बहुत सारे जो हैं कपस मिल रहे हैं। यहाँं पे कोकरी का सारा सामान मिल रहा है चाहे फ्लावर पोट हो चाहे कप हो चाहे हुन्दे हो चाहे कोई भी चीज़ हो यहाँं कोकरी का सारा सामान --

ये कैसी जगह है जहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ योगा कर रही हैं यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं शायद यह सभी अपने अल प्ले स्कूल से रिलेटेड हैं।

यहाँ खुला हुआ आसमान है चारों तरफ पेड़-पौधे है और ये सभी चीज़े देखने में बहोत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बोहोत --

देख सकते हैं बहोत सारे फ्लावर है। बहोत सारे कलरफुल फ्लावर हैं यहाँ येलो फ्लावर ग्रीन और रेड फ्लावर है। ब्लू फ्लावर है।